ये शायद साइकिल की दुकान है और हमे यहाँ पर बहुत सारी साइकिल भी दिखाई दे रही है बड़ी और छोटी सभी प्रकार की हमे साइकिल दिखाई दे रही है।

ये देखिऐ यहाँ पर हमारे सामने एक स्टेज तैयार हो रहा है डांस के लिए यहाँ पर हमे डिस्को लाईट वगेरा दिखाई दे रही है यहाँ पर हमे चेयर भी दिखाई दे रही है एक आदमी भी हमे यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ साईड में टेंट --

यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है एक नाइ की दुकान है यहाँ पर ये लड़का खड़ा हुआ है यहाँ पर मुझे चेयर वगेरा भी दिखाई दे रही है वाइट कलर की दिवाल दिखाई दे रही है एक आदमी--